घर बन रहा है और एक रूम वह रूम अभी बना नहीं है जिसका काम अभी चल रहा है बोहोत जोरो टोरो की --

बहुत ही सुन्दर जिम है।

अच्छे पेड़ लगे हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा रोड क्रासिंग है।